जो अ की यहाँ बहुत से लोग सुबह सुबह का बेला लग रहा है।

कमंडल बहोत सारे और चीजें हैं।

जो ऑरेंज कलर और एक दो साइड में सड़क बनी हुई है जो सुरक्षा दे रही है।

एस.बी.आई. कार्ड मतलब यहाँ पे शायद एक ए.टी.एम. के लिए भी लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा है अगर कोई मॉल से शॉपिंग करता है तो यहाँ अपना पेमेंट कर सकता है या निकाल सकता है।

यहाँ एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जिसकी मरम्मत अच्छी तरह से हुई नहीं है।

और ये घर नहीं लग रहा है कुछ और लग रहा है जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है।

इसपे ऊपर उ ऊपर छड़े लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पुराना महल जैसा लग रहा है।

ऑरेंज कलर का और हरा कलर का और ब्लू कलर का है।

और अ यहाँ बाउंड्री हुआ है और ए सड़क भी है।